ऐ फोटो किसी ग्राउंड का फोटो दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे लोग खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

जिसमें टेबल पर एक सफेद कलर की प्लेट में चावल रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

बाहर इसके कुछ टायर निकले हुए डले दिखाई दे रहे है।

ये फोटो किसी फैन की दुकान का फोटो दिखाई दे रहा है।

सामने एक कांच का गेट भी दिखाई दे रहा है।

यह फोटो एक छत का फोटो दिखाई दे रहा है।

जिसमें बहोत सारे जींस भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में एक सीमेंट की दुकान दिखाई दे रही है।

और इसमें एक टेबल भी डाली हुई दिखाई दे रही है।

जैसे में बहोत सारे लोग वाटर में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह फोटो किसी प्रोग्राम का फोटो दिखाई दे रहा है।

एह फोटो किसी पार्क का फोटो दिखाई दे रहा है जिसमें एक हिरण का स्टेचू बना हुआ दिखाई दे रहा है।

इसमें बहोत सारे पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

ऐ फोटो किसी बनारसी भंडार पान कि दुकान का फोटो दिखाई दे रहा है।

ऊपर बहोत सारी लाइटे भी जलती हुई दिखाई दे रही हैं।

जिसमें बिल्डिंग का कलर सफेद और लाल पुता हुआ दिखाई दे रहा है।

और इसमें एक पन्नी भी डली हुई दिखाई दे रही है।

इसमें कुछ फैन भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

आस पास कुछ पेड़ पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में एक छत डलता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ मजदूर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

और ऊपर बहुत बड़ी लाइट भी जलती हुई दिखाई दे रही है।

और इसमें आसमान भी खुला हुआ दिखाई दे रहा है।

ऐ फोटो किसी स्टेज का फोटो दिखाई दे रहा है।

इसमें एक सोफा डला हुआ दिखाई दे रहा है।